इस तस्वीर में बोहोत सारे लोगो की भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही हैं और छोटे छोटे टेंट भी लगे हुए हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं और एक कुर्सी भी दिखाई दे रही हैं।

टेबल भी रखी हुई है कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है कंप्यूटर भी रखे हुए दिख रहे है पंखा दिखाई दे रहा है बहुत सारी किताब भी रखीं हुई दिखाई दे रहा है।

कुछ कपडे रखे हुवे है कुछ कपडे हँगरसे टंगे हुवे है जो अ टी-शर्ट है वो बहूत सारी कलर कि दिखाई दे रही हैं रेड ब्लू व्हाईट --

जिनका कलर व्हाईट है रेड है और ग्रीन कलर का है इनमे तीन कलर कि मालाए है और यल्लो कलर के फुल दिख रहे है कमल के फुल भी दिखाई दे रहे है जिनमे एक फुल खीला हुआ दिख रहा है।

शर्ट है एक ग्रीन कलर की शर्ट और जैकेट है एक ब्लू कलर की शर्ट और जैकेट है एक रेड कलर की शर्ट और जैक --

इस तस्वीरमें बहुतसारे फल रखे हुए दिखाई दे रहे है इन फलोमें संतरा केला अनार सेब फल दिख रहे है।

उसमे बहुत सारे अह बच्चे बैठे हुए दिख रहे है उन मे वो अह एक ही कतार मे लाइन लगा लगा कर बैठे हुए है पेड़ भी दिखाई दे रहे है आसमान भी दिख रहा है।